पेन दिखाई दे रहें हैं पेंसिल्स दिख रही है जोमेट्री बॉक्स दिखाई दे रहें हैं।

आदमी दिखाई दे रहा है दुकानें दिखाई दे रही हैं।

में सामान अ रखा हुआ है और बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं स्ट्रीट लाइट्स दिख रही हैं।